ये किसी जिम की तस्वीर है जो कि कोई आदमी वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है।

के प्रांगण की फोटो है जहां अभी जैसे सजाके त मानो एस तुरंत फोटो ले ली गई है।

और इस ए_टी_एम मशीन के बाहर किसी आदमी --